यहाँ पे कोई दूसरा जुलूस निकाला ।

रेड कलर का दो साइड मे खम्बा है।

और उनके गर्जियन बैठे हुए हैं ।

एक इस दृश्य मे एक दूध का डेरी दिखाई दे रहा है और एक --